एक होटल दिखाई दे रहा है जिसमें केरला होटल लिखा हुआ है इसमें वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट सब है और यहां पर बाहर में आदमी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं|

यहापे पोस्ट दिखाई दे रहा है जिसमें आइटम्स का यहां पर पिक्चर्स है बाहर में डस्टबिन रखी हुई है बहुत सारे गाड़ी है पर दिखाई दे रहा है|